यह वाइट कलर की बिल्डिंग है उसके ऊपर रेड कलर के बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए हैं के आगे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई --